यहां पे एक शीशा है यहां पे एक लोग कटिंग करा रहे हैं तो कुछ लोग फोटो ले रहे हैं।

उस पे बैनर बना हुआ है और बाल कटिंग की फोटो लगी हुई है।

हरे कलर की कुर्सियां हैं और येलो और वाइट कलर की दीवाल छत हैं।

झोपड़ी छप्पर पड़े हैं और कुछ लाइटे हैं बहोत सारे लोग भी हैं।

ये बहुत सारे लोग हैं और यहां पर पीलर भी बहोत सारे हैं।

दीवार ग्रे कलर की है उसमें शीशे लगे हुए हैं।